यहां पर बहोत सारे लोहे के सरिए दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर एक शंकर जी की मूर्ति बनी हुई है।

यहां पर बहुत सारे लकड़ी के बंबू दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर जनता नाम का एक स्वीट हाउस दिखाई दे रहा है।

और यहां बहुत सारे व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर दो मोटरसाइकल रखी हुई है।

और बहोत सारी किताबें रखी हुई है।

और यहां एक साचा लकड़ी का रखा हुआ है।

जिस पर हेल्थकेयर मेडिकल इक्विपमेंट्स लिखा हुआ है।

और यहां पर कुछ व्यक्ति और महिला दिख रही हैं।